यहाँ पर ढेर सारे बैठने का जगह है।

ए एक सरकारी विद्यालय हे ।

ये एटीएम सेंटर बहोत ही साफ सुथरा है। इसके उपर एक बिल्डिंग भी है।

इस बैंक के सामने एक एटीएम सेंटर भी है।